सामने आसमान है वहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है सामने बिल्डिंग भी है।

उसमे एक वाइट कलर का भी पेंट है।

सामने एक फैक्ट्रिक जो जिसमें दो कारीगर काम कर रहे हैं।

औरत वहाँ पे न नित्य कर रही है।

उसके नीचे टेबल पे लाल रंग का कपड़ा रखा हुआ--

मेरे सामने एक है जो बुरा कलर का --

उसके ऊपर लैपटॉप भी है लैपटॉप लैपटॉप शीशे के ऊपर रखा है।

यहां सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है घर पीले कलर का पेंट है उसके नीचे जो शटर है शटर भूरे कलर का है।